पिक्चर मे बहोत सारी मछलियाँ एक टेबल पर रखी हैं आस पास लोग खड़े हैं उन्हे खरीद ने के लिए पीछे महिलायें बेठी है जो की मछलियों को छील रही हैं।

और बहोत सफ़ेद पेंट हुआ है बहोत ज्यादा खूबसूरती सी नजर आती है लोग बैठे नजर आते है कुर्सियों पर बूढ़े जवान सब प्रकार के लोग खाना खा रहे है आपस मे मिल जुल कर।

शादी हो रही है और सजावट भी बहुत अच्छी है। फुल दिख रहै हैं। सजावट ज लोग सजे-धजे फिर रहै हैं और यहा पर दूल्हा-दुल्हन बैठे शादी की प्रक्रिया --

इस चित्र में यह लड़का अपने बालों को दीखाता नजर आ रहा है जिसने अभी-अभी अपने बालों का कट लगवाया है और बाल कटवाए है और पीछे हरे रंग की दीवार है और इसके बाल अभी कटे नजर आते है।